बैगन रखे हुए है अटर्रे रखे हुए हैं।

और उसके साथ उन्होंने कांबिनेशन पर्पल कर रखा है।

और यहाँ पर आसपास जो दीवार है दीवार की जगह पर इन्होंने टेंट लगा रखा है।

और यहाँ पर एक लड़का भी दिख रहा है।

और यहाँ पर हमें कॉपीज भी दिख रही हैं।

एक ब्राउन कलर का गेट दिख रहा है एक ऑरेंज कलर का गेट दिख रहा है।

और इन सब के पीछे हमें एक बहोत बड़ा सारा पहाड़ दिख रहा है।